यहाँ पे मकान बनने का कम चल रहा है बहुत सारे छोटे - छोटे गमले रखे हुए है आधे - आधे ड्रम रखे हुए है ड्रमो का कलर लाल नीला पिला हरा --

ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे कोई चीज का खेल होने जा रहा है इसमें बीच में तंबू बनाया गया है जो नीली सफेद पट्टेदार की छत बनाई गई है|

लेडिस और जेंट्स खड़े हुए हैं लेडिस ने पीली हटे-- हरे पट्टेदार साड़ी पहनी हाथ में कुछ पकड़ी हुई है जेंट्स है जिसने सफेद शर्ट और काला पेंट पहना है सिर में टोपी लगा--

यहां पे दो लड़की और तीन लड़के खड़े हुए है लड़कियों ने हल्की आसमानी कलर की साड़ी पहनी है एक ने बनारसी साड़ी पहनी है एक ने--

आसमानी कुर्ता और गले में सफेद स्कार्फ डाला हुआ है ए पीछे के पर्दे का कलर गुलाबी है और पीला है ऊपर ब फ्लावर की सजावट है जो सफेद --

खम्भे दिख रहे है जिसमे फ्लावर की डेकोरेशन है एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ब्लेज़र पहना काले कलर का ब्लेज़र सफेद शर्ट काली टाई और आँख में चश्मा ल--

यहाँ एक अब डैम दिख रहा है जिसके गेट खुले हुए हैं पानी बहुत ऊपर फ्लोर में है पुल दिख रहा है।

जिसने लाल साड़ी पहनी है एक गाड़ी खड़ी है जो लाल काले रंग की है एक शटर लगी --